पुस्तकालय है पौधा है खिड़की है।

फल का दुकान है फल के पोस्टर है सेव है अनार है ।

अ दरवाजे लगा हुआ हैं वह नाली है ढका हुआ है जमीन है।